sbi pay ऍप को उपयोग करने हेतु इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे पैसा ट्रान्सफर करना और
sbi pay ऍप उपयोग करके अपने साभी लेनदेन का ट्रैक रखना
इस वेबसाइट पर उपलब्ध पिछले ट्यूटोरियल में हमने sbi pay ऍप पर पंजीकरण करना सीखा
निश्चित कर लें कि आपने वह ट्यूटोरियल सुन लिया हो और अपने फ़ोन पर sbi pay संस्थापित कर लिया हो
संस्थापन के बाद सभी एक बार की पंजीकरण प्रक्रियाएँ भी पूरी कर ली हों
जो हैं sbi pay ऍप पासवर्ड और mpin
अब sbi pay ऍप उपयोग करना सीखते हैं
अपने एंड्राइड स्मार्टफोन पर यहाँ प्रदर्शित की तरह sbi pay ढूँढें
यहाँ प्रदर्शित की तरह हम आइकन चुनकर ऍप खोल सकते हैं
आपसे वही पासवर्ड प्रविष्ट करने के लिए पूछा जायेगा जो आपने पंजीकरण के दौरान बनाया
अब वह करें और फिर submit बटन चुनें
वो ऍप आपको अगले स्क्रीन पर ले जायेगा जोकि मेन मेन्यू है
अब sbi pay ऍप उपयोग करके पैसा ट्रान्सफर करना सीखते हैं
pay विकल्प चुनें
ऍप इस पेज को पुनर्निर्देशित करता है
यहाँ आपको वो बैंक खाता चुनना है जिससे आप भुगतान करना चाहते हैं
बैंक खाता जो आपने पहले ही पंजीकृत कर लिया है इस सूची में दिखेगा
वो खाता चुनें
फिर payees virtual address में सम्बंधित प्रविष्टियाँ करें
ध्यान दें प्राप्तकर्ता को अपने फ़ोन पर sbi pay का पंजीकरण पहले ही कर लेना चाहिए
ऍप तुरंत ही विवरणों की प्रमाणीकरण करेगा
और स्वतः ही प्राप्तकर्ता का नाम दिखायेगा
भविष्य के सन्दर्भ के लिए remarks क्षेत्र में कोई भी रिमार्क जो आप चाहते हैं लिख सकते हैं
फिर transaction amount क्षेत्र में धनराशि प्रविष्ट करें
ऍप आपको mpin प्रविष्ट करने के लिए कहेगा
यहाँ mpin प्रविष्ट करें
और submit बटन चुनें
अगर बफरिंग साइन दिखता है तो इंतज़ार करें
अब स्क्रीन पर आपको सफलता मैसेज मिलेगा
आपको लेनदेन की जानकारी के साथ आपके बैंक से एक sms भी मिलेगा
यह दिखाता है कि आपका लेनदेन पूरा होता है
प्राप्तकर्ता को वो पैसा मिल गया है जो आपने ट्रान्सफर किया
इस प्रकार आप sbi pay ऍप उपयोग करके भुगतान करते हैं
अब मेन मेन्यू पर वापस आते हैं
आप मेन मेन्यू में my upi transactions विकल्प चुनकर अपने सभी लेनदेन का ट्रैक रख सकते हैं
यह वो लेनदेन है जो आपने अभी किया
इसी प्रकार यहाँ प्रदर्शित की तरह लाभार्थी को भी उसके बैंक से एक sms मिलेगा
वह भी मेन मेन्यू में my upi transactions विकल्प उपयोग करके वही चेक कर सकता है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
इसे सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न करना सीखा
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम अनेक सूचनात्मक और सामान्य जानकारी के विषयों पर ऑडियोवीडियो ट्यूटोरियल्स बनाती है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है
विषयों की पूरी सूची के लिए कृपया